यह स्थल विवाह स्थल जैसा लग रहा है जहाँ नीचे--

दूसरी तरह एक इमारत दिखाई दे रही है और उसके एक तरफ--

यह दृश्य बहुत ही मनोरम है ऊपर की तरफ बादल दिखाइ दे रहे हैं आसमान में नीले आसमान में सफेद रंग के बादल।

यहां मिट्टी का रंग भूरा रहा है और पेंट का कलर सफेद --

यह एक दुकान प्रतीत होती है जिसके ऊपर सबसे पहले जी एक्स कटलेक्स लिखा हुआ है।

बीच में एक काले रंग का एक बॉक्स रखा हुआ है।

और उस पर टी एस जीरो नव इ के दो जीरो तीन पाँच लिखा हुआ है।

दोनों हाथों से अपने फोन को पकड़े हुए है। उसने काले रंग कि एक वाच पहनी हुई है। उसने नीले रंग के शर्ट पहनी हुई है उसकी दाढ़ी है।

अंदर की तरफ एक बाइक खड़ी है। बाहर एक हरे रंग का पेड़ है। एक ब्यक्ति झुक कर खड़ा हुआ है।

सफेद कलर की लाइटें ऊपर है। साइड वाले दीवार का रंग हरा है। नीचे फर्श काले व सफेद रंग के है।

यह दृश्य एक सड़क का है इसमें एक--

सबसे पहले व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने सफ़ेद रंग कि शर्ट पहनी है और गुलाबी रंग का गमछा गले में डाला हुआ है। इसके सर पर बाल कम है।

दूरी पर ऑटो-रिक्शा देखे जा सकते है और उसके पीछे एक हरा पेड़ और एक बहोत (बहुत) सफ़ेद बड़ी ईमारत देखी जा सकती है।

सफेद रंग की ट्यूब लाइट लगी हुई हैं और फर्श का रंग भूरा है।

का चीजें रख के बच्चे कुछ क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं।

एक द्रश्य में पीले रंग का ऑटो खड़ा है बैटरी रिक्शा और पास में हेड पम्प भी है।

ऊपर छत का रंग सफेद है कल पंख लगा हरे रंग की दीवारें है।

यह दृश्य जिस कमरे का है। वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक औरत बैठी हुई है।

फास्ट्रेक वरपूल सैमसंग गैलेक्सी ओप्पो कैमरा फोन लिखा हुआ है।

पर कुछ सीमेंटेड और लोहे के सरिये दिखाई दे रहे है पीछे हरे रंग के पेड़ है।

भूरा व पीला है। इस सालमारी के बाहर की तरफ स्टैंड लगा है खोलने के लिए।

जिस के ऊपर लाल रंग का एक बोर्ड है और ऊपर पीले रंग से म स मेंस पार्लर लिखा हुआ है।

बाहर की तरफ एक लड़का खड़ा है नीले रंग की पॉलीथिन लेकर और दूसरी तरफ दुकान की शटर का रंग पीला और --